हमें एक घर दिख रहा है जिसमें सफेद कलर का पोस्टर है जिसमें--

और तीन नाव लगी हुई हैं जिसपे सर्कल लगी हुई है रंगीन दो ऑरेंज है और एक हरी और नीली दिख रही है और एक खंभा लगा है जिसपे ऊपर--